चित्र में बाजार की सड़क दिखाई दे रही है।

यह एक छोटा बाजार है जहां सब्जियां और किराने का सामान बिक रहा है।

यह व्यक्ति झील के किनारे पत्थरों--

पीछे विवाह या पार्टी जैसा आयोजक दिख रहा है।

यह एक पीले रंग की दो मंजिला इमारत है।

बैंक के सामने कई मोटरसाइकिले खड़ी है।

लोग सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत के अंदर जा रहे हैं।

महिला रंगीन कपड़े पहनकर हाथ में थैला लिए दिखाई दे रही है।

कुछ मजदूर काम कर रहे हैं और सामान मिला रहे हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर है।

दुकान के अंदर दो लोग बैठकर बात कर रहे हैं।